और नाव के ऊपर एक नावक बैठा हुआ है ।

उसके सामने एक पोल लगा हुआ है छोटा सा।

यहाँ पर हमे दिख रहा है की बहुत सारी गाडियां यहाँ पर खड़ी हुई है ।

ओ लाइटें लगी हुई है और लेडीजे --

और सामने एक एक बाइक खड़ी है।

लाइट्स जो की नीचे की ओर लटक रही है ब्लू कलर की --

जाती हुई एक सीढ़ियां जो है ये पहाड़ियों पर ही है।

और गाड़ियों के उपर केरियल लगा हुआ है।